लिखा हुआ है और हम लोग आसपास बहुत सारे पेड़ और पौधे हम लोग देख सकता है।

ब्लू और व्हाइट कलर का मिक्स कलर टी शर्ट पहना हुआ है और नीचे में जींस लगाया हुआ है।

आस पास बहोत सारे बाइक पार्क किया हुआ है ब्लैक रेड कलर का किया हुआ है।

और वहां पर थोड़ा ट्रायलेन भी हम लोग देख सकता है और ऊपर में हम लोग देख सकता है बहुत ही सारे फोग निकला हुआ है।

इस पिक्चर में हम लोग देख सकता है बहोत सारे बंदे खरा हुआ है।

वहां का वायरिंग बहुत सारा दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं एक जगह में जमा हुआ--

और नीचे में हम लोग बहोत सारी ग्रासेस भी देख सकता है और दूर में बहोत सारे ट्रीज माउंटेंस हम लोग देख सकता है।

है और वो वहां में रेड कलर का बड़ा सा पेंट किया हुआ है।

साइड साइड में बहोत सारा पोस्टर भी लगाया हुआ है।

वहां पर हम लोग लाइन पोस रखा हुआ है वहां पर देख सकता है फेंस के लिए।

और हम लोग उस घर के सामने एक कार भी देख सकता है।

और उस पेड़ से बहोत सारा ब्रांचेस निकला हुआ है और ग्रीन लीव्स बहोत सारा निकला हुआ है।